रोड है रोड के बगल में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और है इसके गाड़ियों के पास में बहुत सारी दुकान दिखाई दे रही है।

बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड ही ग्राउंड दिख रहा है सामने एक कुछ घर जैसा बना हुआ है वह ब्लू कलर का दिख रहा है।

सभी सामान है मांग भरने की नाखून पार्ले चिमटी क्लप तेल की सीसी और बहुत सारा सामान है यहां पर बहुत सारे लाके रखी हुई है बहुत सु --